लिबर ऑफिस में डेटा स्वरूपण यानि फॉर्मेटिंग डेटा पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
बॉर्डर्स बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट करना
ऑटोमैटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट की विभिन्न लाइन्स को फॉर्मेट करना
सेल्स को मर्ज करना
सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कम करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
पहले हम लिबर ऑफिस कैल्क में बॉर्डर्स फॉर्मेट करने के बारे में सीखेंगे
चलिए अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल ओपन करते हैं
बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग एक विशेष सेल या सेल्स के ब्लॉक पर की जा सकती है
उदाहरणस्वरूप चलिए सीरियल नंबर इतेम कॉस्ट स्पेंट रिसीव्ड डेट अकाउंट हैडिंग्स वाली सेल्स को फॉर्मेट करते हैं
अतः पहले स्न से संबोधित सीरियल नम्बर हैडिंग वाली सेल पर क्लिक करते हैं
अब लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करें और हैडिंग्स युक्त सेल्स के साथ इसे ड्रैग करें
हैडिंग युक्त पूरी हॉरिज़ान्टल रो को चुनने के बाद फॉर्मेटिंग टूलबार पर बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करें
विविध बॉर्डर स्टाइल के साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है
किसी एक स्टाइल पर क्लिक करें जिसे आप बॉर्डर्स पर लागू करना चाहते हैं
मैं आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा
हम देखेंगे कि बॉर्डर्स हमारी चुनित स्टाइल के अनुसार फॉर्मेट हो गये हैं
इस बदलाव को अंडू करते हैं
चुनित सेल्स अभी भी चिन्हांकित हैं
चुनाव किए गए पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनें
अब बॉर्डर्स टैब पर क्लिक करें
आप लाइन अरेंजमेंट लाइन स्पेसिंग टो कंटेंट्स और शैडो स्टाइल के लिए ऑप्शन देखेंगे
इन प्रत्येक का प्रदर्शित होना कैल्क की डिफॉल्ट सेटिंग है
लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी को भी बदल सकते हैं
user डिफाइंड के नीचे आप एक छोटा प्रीव्यू विंडो देख सकते हैं जो चुनाव को दिखाता है
मैं डिफॉल्ट के नीचे तीसरे ऑप्शन को चुनूँगा और आप देख सकते हैं कि यह प्रीव्यू विंडो में प्रतिबिंबित होता है
मैं स्टाइल विड्थ और कलर भी बदलूँगा
फिर से प्रीव्यू विंडो में बदलाव पर ध्यान दें
कन्टेंट के अंतर के लिए सिंक्रोनाइज ऑप्शन चुनें
अर्थात सभी मार्जिन्स के लिए समान स्पेस लागू होता है
इसे अचयनित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार मार्जिन का स्पेस बदल सकते हैं
मैं टॉप और बॉटम मार्जिन 14पीट तक बदलूँगा
मैं आपको खुद से विविध शैडो स्टाइल्स का पता लगाने के लिए छोड़ता हूँ
ओक पर क्लिक करें
यह चयनित स्टाइल को चुनित सेल्स पर लागू करेगा
बॉर्डर्स कैसे फॉर्मेट करें यह सीखने के बाद अब सीखते हैं कि सेल्स को बैकग्राउंड कलर्स कैसे दें
सेल्स को बैकग्राउंड कलर्स देने के लिए फॉर्मेटिंग बार में कैल्क बैकग्राउंड कलर नामक एक ऑप्शन प्रदान करता है
अब देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है
उदाहरणस्वरूप चलिए हैडिंग्स युक्त सेल्स को बैकग्राउंड कलर देते हैं
अतः पहले सेल्स पर क्लिक करते हैं जो कि स्न से संबोधित हैडिंग सीरियल नम्बर युक्त है
अब लेफ्ट माउस बटन होल्ड करें और हैडिंग्स युक्त सेल्स तक इसे ड्रैग करें
हैडिंग युक्त सभी हॉरिज़ान्टल रो को चुनने के बाद फॉर्मेटिंग टूलबार में बैकग्राउंड कलर ऑप्शन पर क्लिक करें
एक पॉप अप मेन्यू ओपन होता है जहाँ आप वह कलर चुन सकते हैं जिसे आप बैकग्राउंड में लागू करना चाहते हैं
चलिए ग्रे कलर पर क्लिक करते हैं
आप देख सकते हैं कि हैडिंग के लिए सेल का बैकग्राउंड ग्रे हो गया है
कैल्क टेक्स्ट के मल्टिपल लाइन्स को फॉर्मेट करने के लिए विविध ऑप्शन्स प्रदान करता है
पहला ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके
ऑटोमेटिक रैपिंग उपयोगकर्ता को एक ही सेल में टेक्स्ट की मल्टिपल लाइन्स एंटर करने के लिए अनुमति देता है
अतः देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता है
अब अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस शीट में एक खाली सेल पर क्लिक करते हैं
उदाहरणस्वरूप सेल संख्या ब12 पर क्लिक करते हैं
अब सेल पर राइट क्लिक करें और फिर फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
अब डायलॉग बॉक्स में एलिग्नमेंट टैब पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स में नीचे व्रैप टेक्स्ट ऑटोमैटिकली ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
अब हम टाइप करते हैं थिस इस आ पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर
इत इस वेरी यूजफुल आप देखेंगे कि सिंगल सेल में मल्टिपल स्टेटमेंट रैप्ट हो गई हैं
बदलाव को अंडू करें
ऑटोमेटिक रैपिंग के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि कैल्क में सेल्स कैसे मर्जविलीन करें
अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल में यदि हम स्न हैडिंग के साथ सीरियल नम्बर युक्त सेल्स को और उनके समरूपी आइटम को मर्ज करना चाहते हैं तो पहले स्न के नीचे डेटा एंटरी 1 पर क्लिक करें
अब कीबोर्ड पर Shift की को होल्ड करके रखें और इसके समरूपी आइटम सैलरी के साथ सेल पर क्लिक करें
यह दो सेल्स को चिन्हांकित करता है जो मर्ज हो जाती हैं
फिर मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
साइडबार जो कि पॉप अप होता है उसमें मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
सिंगल सेल में दोनों सेल्स के कन्टेंट्स को स्थानांतरित करने के लिए दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में येस ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि चुनित सेल्स एक में मर्ज हो गई है
और कन्टेंट्स भी उसी मर्ज हुई सेल में हैं
अब मर्ज हुए को अंडू करते हैं हमने टूलबार में उंडो ऑप्शन पर क्लिक करके या CTRLZ को एक साथ प्रेस करके किया
आगे हम सीखेंगे कि सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कम कैसे करें
सेल में डेटा का फॉन्ट साइज सेल में फिट करने के लिए स्वतः से समायोजित किया जा सकता है
चलिए सीखते हैं कि यह कैसे करें
चलिए ब14 सेल में थिस इस फोर थे मोंथ ओएफ जैनुअरी टेक्स्ट टाइप करते हैं
आप देखेंगे कि टेक्स्ट सेल में फिट नहीं होता है
टेक्स्ट को कम करने के लिए ताकि यह फिट हो जाय पहले ब14 सेल पर क्लिक करें
अब मेन्यूबार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेल्स पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है
डायलॉग बॉक्स में एलिग्नमेंट टैब पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स के तल पर श्रृंक टो फिट सेल साइज चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि पूरा टेक्स्ट कम हो गया है और इसके फॉन्ट साइज घटने से खुद व्यवस्थित हो गया है इसलिए टेक्स्ट फाइल ब14 सेल में फिट हो गई है
बदलावों को अंडू करें
अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न बारे में सीखा कैल्क में बॉर्डर्स फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर करना
ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट की मल्टिपल लाइन्स को फॉर्मेट करना
सेल्स को मर्ज करना
सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को कमश्रिंक करना
व्यापक नियत कार्य
स्प्रेडशीट practiceओडीएस शीट ओपन करें
सभी हैडिंग्स को चुनें
हैडिंग्स को नीलाब्लू बैकग्राउंड कलर दें
ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट टाइप करें थिस इस आ डिपार्टमेंट स्प्रेडशीट
सेल में फिट करने के लिए इस टेक्स्ट को कम करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैंअधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद